झोपडी के नीचे बहोत सारे छोटे छोटे कंकड़ हैं और मिट्टी भी है और एक बड़ी लकड़ी रखी हुई है।

झरने का कलर व्हाइट दिख रहा है।

नीचे पानी गड्ढे में ग्रीन दिखाई दे रही है।

एक वहां पे छोटा बच्चा है वह पाइप से पानी दे रहा है फूल को।

इस कमरे में नीचे कारपेट बिछी हुई है व ग्रीन कलर की है।

दीवार के पीछे पर्दे दिख रहे हैं एक वाटर बोतल भी रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति भी नहा रहे हैं और कुछ व्यक्ति पुल के ऊपर खड़े हैं।

यह एक कमरा का दृश्य है कमरे का दीवार का कलर व्हाइट है।

इस कमरे में बहुत सारी अलमीरा बनी हुई है अलमीरा में बहुत सारे मशीन के डब्बे रखे हुए हैं और मशीन भी रखा हुआ है।

ये एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के ऊपर में रेलिंग वाली पाइप लगी हुई है।

दीवार पर एक ट्यूबलाइट भी दिख रही है और भी बहोत सारे वस्तुएं हैं और नीचे में कुछ वस्तुएं भी पड़ी हुई है।

एक कमरे का दृश्य है कमरे में चारों तरफ से पैक किया गया है।

यह एक बहोत ही बड़ा पहाड़ का दृश्य है पहाड़ में बहुत सारे छोटे छोटे घास भी जम गए हैं।

बड़े से टावर का दृश्य है टावर लोहे से बना हुआ है।

टावर के बगल में एक बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर में सिंटेक्स लगा हुआ है वह वाइट कलर का है।

अलमारी के ऊपर भी बहुत सारे वस्तु रखे गए हैं रंग बिरंगी डिबिया भी है।